मला यहाँ पर नीले रंग का एक काफी ऊँचासा फव्वारा दिक्सती आहे माला फ़व्वारेच्या चारो तरफ नील रंग की लाइट लगी हुई दिक्सती आहे.